और इस शॉप के अंदर तो कोई है नहीं बाहर एक व्यक्ति--

दिन के समय में स्कूल टाइम में फोटो ली गई है।

इस पिक्चर को जैसा कि हम देख सकते हैं यह एक स्कूल की पिक्चर है।

यह एक होटल की फुटेज दिखाई दे रही है।

बैठे हुए है बैठे हुए है दो लोग दिख रे दिखाई दे रहे है और इस सब के अंदर--

जैसा कि हम इस फोटोज़ को देख सकते है ये एक शॉप है।

फुटेज देख के बता सकते है कि हम ये एक शॉप है जिसमें--

जोकि अपने परचार के पोस्टर वगैरा भी लगाए गए हैं इन्होंने लगाया है और इसमें एक अलमारी सी भी रखी गई है।

ये शायद समंदर भी हो सकता है या फिर कोई--

जैसा कि हम इस पिक्चर को देख रहे हैं ये एक अ अ पिक्चर की जो इमारत--

इस इमेज़ को देखके लग रहा है की ये एक कोचिंग सेंटर दिखाई दे रहा हैं जहां पे काफी अं--